जो आदमी बैठा है उसके हाथ में कुछ लोहे का जिम करने के लिए कुछ कपड़ा हुआ है।

पेड़ों के इधर साइड में खंभे लगे हुए हैं अह पत्थरों के खंभे छीने--

और उसके पीछे एक और भवन बना हुआ है जो कि येलो कलर का है बीच बीच में बहोत ही सारे बहोत बड़े पेड़ लगे हुए हैं।